जेसा की हम देख सकते सामने हमे एक मंदिर दिख रहा है जोकि बहोत ही अच्छा मंदिर दिख रहा है जो की ऑरेंज कलर का मंदिर दिख रहा है जिसकी दीवाल क्रीम कलर की दिख रही है निचे मार्कट दिख रहा है जिसमे रिक्शा रख्खे हुई दिख रही हे जो की काले और पीले दिख रहे हैं।

जैसा की हम देख सकते है की सामने एक आदमी सामने की तरफ खड़े होकर देख रहा है जोकि शर्ट पहने हुए जिसका शर्ट सफेद हैं चेहरा काला है चस्मा भी काला है इधर की दाढ़ी दिख रही एह नीचे जींस पेहन रखी।

जूते पेहन रखे हैं हाथ में मोबाइल दिख रहा है पीछे हमको घर दिख रहे जिसमे पिला कलर दिख रहा कुछ घर दिख रहे हैं जो बिना प्लास्टर के दिख रहे हैं नीचे अंडर कंस्ट्रक्शन घर--

इस में जो की सीडी लगी हुई है इसमें व्हाइट कलर की लाइटिंग लगी हुई है ऐ.सी लगे हुए हैं और नीचे खुर्सियाँ दिख रे है जो की बोहोत बढ़िया लग रही हैं और ये बहोत ही सुंदर है ये टाइल्स भी रख दी है नीचे।